में कम्फर्टेबले फील करते है जिम में आकर वो अच्छे से रहते हैं।

यह एक कपड़ा दुकान है जिसमें खरीदने के लिया कस्टमर लोग आते है और अपने मन पसंद से कपड़ा खरीद कर चले जाते है जिससे उनको --

ना कला का प्रदर्शन अच्छे से कर सके और वो अच्छे से कर रहे है जिससे सभी को ख़ुशी मिले और वह अच्छे से ही करेंगे।

आगे बढ़ सके इस लिए इस रैली को निकाले है इस से वो जो --

है और जिसमें वह अच्छे से दिख रहे है इसमें सभी प्रकार के सब कुछ मिलते है एक दुकान है जिस में सब--

अच्छे से दिख रहे है और बहुत अच्छा भी लग रहा है।

ये एक लोहा का दुकान है इसमें लोग अपना काम करने के लिए आते है या कुछ करवाने के लिए आते है। ]

हरे-भरे जैसे दिख रहे है।

अपना काम आसानी से कर सकेगा रहती है जिसे हम अपना काम कर --

यहाँ पर लोग पूजा करने के लिए गए हुए है पूजा कर रहे है एन्जॉय कर रहे है पार्टी ऊटी कर रहे है सब लोगो को बहोत मज़ा आ रहा है।